लड़के खड़े हैं। छात्र उनको मशीन चलाना सिखा रहे हैं।

दो आदमी है जिन्होंने लाल पगड़ी पहना हुआ हैं।

ये एक लती कि मूर्ति है जिसमें --

ये एक कच्छा बनियान का दुकान है।

और यहाँ पे दो पुलिस वाला भी खड़ा है।

इसके इसको सजाने के लिए मनीप्लांट भी लगाया गया है।

ये एक बड़ा सा तालाब है। जिसके पास बड़ा-सा पर्वत है। यहाँ पर बहोत सारे हरे पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक बुद्धा का मंदिर है। बुद्धा का प्रतिमा को दे --

रस्ते पे भी थैला लगाया गया है। यहाँ पे सब्जियां बेच रहे है।